गेट पीला कलर का है।

ये अन्नपूर्णा चूड़ी स्टोर एंड लोडीसे कॉर्नर की दूकान --

सामने चेयर और टेबल लगा हुआ है.

पूजा अर्चना के पश्चात जो रैली निकलती है।

रेस्टोरेंट है कुछ लोग खाना खा रहे हैं।

उस कुरकुरे की लरी लगी हुई हैं बाहर.

ऊपर रॉयल पैलेस का बोर्ड ब्लैक लगा हुआ है.

काफी सारे बैलून सजाए गए हैं।

बहुत सारे नल सैंपल के लिए दुकान के दरवाजे पर लगे हुए हैं.

ये बुद्ध की स्टेचू लग रही है.

लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी अशोक चक्र बना हुआ है.

बहुत सारे झींगा मछली और बड़ी मछलियां भी है.

एक कंप्यूटर सामने रखा हुआ है.

नीले रंग की ऊँची टेबल हे.

सामने डेस्क सफेद रंग का है।